नजर आ रही हैं और साइड में हमें मोटरसाइकिल खड़े नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक कार दिखाई दे रही है।

और हमे बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

होटल का नेम पिकाडु है।